एक लंबा तक बनाया हुआ हाता दिख रहा है।

और एक लेडिज सड़क पे बैठके सब्जियां बेच रही है।

यहां पे एक बगीचा दिख रहा है उसमें तीन गाड़ी भी लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पे कराटे वाला पोस्टर टांगा हुआ दिख रहा है।

हर तरह-तरह के जानवर भी दिखाई दे रहे हैं हरिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

वॉल पे लगाया हुआ ऐ सी भी दिख रहा है।

गाड़ी लगा हुआ दिख रहा है।

यहाँ पे पानी का तालाब दिख रहा है उसमें ढेर सारा पानी दिख रहा है।

एड में अलमारी दिख रहा है जो कि अलमारी में बुक वगैरा दिख रहा है।

अगल बगल में पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

तारे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक बड़ा सा फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमें ढेर सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

ढ़ेर सारे ठेले वगैरा भी दिखाई दे रहा है।

दो लड़के भी दिखाई दे रहे है।

साइड में छोटे मोटे पत्थल भी दिखाई दे रहे हैं।

बड़े छोटे भी दिख रहे है और एक पोल भी दिखाई दे रहा है।

दूर दूर तक पेड़ का दृश्य भी दिखाई दे रहा है ।

बादल भी दिखाई दे रहा है।

और तरह तरह के पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं।